यह दृश्य में एक पार्क का बाहर का गेट नजर आ रहा है।

इसमें खिड़कियां भी नजर आ रही है और उसके नीचे ढेर सारा आदमी खड़ा है।

यह दृश्य एक रूम का लग रही है।

और मोर के मुंह पे नीले रंग का है और एक लड़की जाती हुई नजर आ रही है।

और उसमें लोहे के दरवाजे बनाकरके रखे हुए हैं और सामने एक पानी का टंकी दिखाई दे रहा है।

और लाइन का पॉल भी नजर आ रहा है।

यह दृश्य में एक ट्रेन नजर आ रहा है जो ब्ल्यू कलर की दिखाई दे रहा है।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

यह दृश्य में एक झील दिखाई दे रही है।

इसपे येलो चादर लगी है और ब्लू का मसलन भी रखा हुआ है।

और उसके दीवार पे कुछ कलरफुल प्रिंट भी बने--

दृश्य में एक जंगल नजर आ रही है जिसको बीचोबीच एक रोड जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक स्कूल नजर आ रही है जो वाइट और रेड कलर की है।